यह एक सैलून है यहां पर--

ए फूल की फोटो हुई है यहाँ पे वृक्ष छोटे -छोटे जो लगाए जाते है गमले में --

अम बाइक जा रही है उसपे बाइक पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है हैलमेट लगाकर के और --

ये बुक का स्टोर है यहाँ पर ए राइटर बुक रखा हुआ है अ--

यहाँ पर बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं और सूरज की रोशनी आ रही है पीछे --

आई थिंग यहाँ पे कुछ मुस्लिम बच्चे अरबी पढ़ रहे है यहाँ पे--